फोटो मे मैं देख पा रहा मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है जो कि इसने नीले रंग की पोशाक पहनी हुई यहां पे पीछे मुझे कांच का शीशा भी दिखाई दे रहा है उस लड़के ने अपने सिर पे कैप भी लगा रखी यहां पे बहोत अच्छा फोटो दिखाई दे रहा यहां पे मु--

कार दिखाई दे रही है मस्त अच्छी अच्छी गाड़ी खड़ी हुई है जिसके साइड सीर में लगी होगी और यहाँ पर राजस्थान होटल है जहा पर होटल की पार्किंग है मतलब यहाँ पर सब लोग टूरिस्ट आए होंगे जो की खाना खाने के लिए रेस्ट करने के लिए होंगे फिर तो मुझे बहोत सारे यहाँ पर पेड़ और पौधे भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर इस होटल के सामने जो गाड़ी खड़ी है अच्छी है यहाँ पर इन में --

आप यहाँ पर देख पा रहे है होंगे मुझे बहोत अच्छा फोटो दिख रहा है इसमें में देख रहा हु यह किसी मैरिज शादी हॉल का फोटो जहा पे छोटी सी लड़की बहोत शानदार है और यहाँ पर खड़ी हुई जिसने हरी रंग की यहाँ पर जैकेट पहनी हुई है पीछे में यहाँ पर बहोत अच्छी लाइट लगी हुई है जहा पर लड़के लड़किया भी खड़े है यहाँ पे पानी का मुझे फॉल दिखाई दे रहा है और किशाका मुझे केले के पेड़ के पत्ते भी दिखाई दे रहे है जहा पर बहोत बड़ी बड़ी बिल्डिंग लगि हुई है जिन पर अच्छे अच्छे लाइट लगी हुई है।

यहाँ पर मैं देख पा रहा हु यहाँ पर मुझे शानदार बहुत बड़ी बड़ी गाड़िया दिखाई दे रही है जो की किसी गैरेज के सामने खड़ी हुयी है और यहाँ सफाई की जा रही है गाड़ियों को यहाँ धोता जाता होगा इनकी मरम्मत की जाती है यहाँ पे--

सेम्पू वगेरा तेल भी रखे हुए हे या पे बहोत सानदार जग-जागण--

ये विहायक पूजा में बहोत अच्छा शानदार फोटो देखने को मिल रहा है जहा पर इस फोटो में देख पा रहा हु यहाँ पे प्रोडक्ट रखे हुए है जिमस करने वाले लड़कियों को यहाँ पर प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है यहाँ मास गैनर भी रखा हुआ है यहाँ पे सप्लीमेंट भी रखे है यहाँ पर काफी बड़े बड़े उनके डिब्बे भी रखे हुए है।

एक यहां पे मुझे बहोत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है यहां पे इस फोटो के अंदर में देख पा रहा हु एक व्यक्ति अपने खेत में कोई मशीन से लगा उसका बराबर लेवल माप रहा है जहां पे गड्ढा खोद रखा है इसने और इसमें यहां पे मिट्टी को बाहर निकाला लगता है यहां पर किसी चीज का निर्माण किया जा रहा होगा।

यहां पे मुझे बहुत बड़ा स्टेडियम है यहां की यहां पे मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई है यहां पे इसमें--

ये भी मुझे बहुत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा जहां पे आप लोग देख रहे होंगे एक यहां भी शादी समारोह है जहां पे कुछ लड़के और लड़कियों यहां पे टेबल चेयर्स यहां पे बैठे हुए हैं यहां पे बहुत अच्छे लाइट लगी हुई है यहां पे शादी समरोह है लड़के और लड़की की शादी हो रही है यहां पे फोटो के --

यहां पे एक मुझे बहुत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है यहां पे इतने में देख पा रहा हूं एक स्टैचू के अंदर यहां पे एक बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है इस पार्क के अंदर लग रहा है किसी मंदिर का फोटो जिसपे लाल रंग का यहां पे कलर किया गया हुआ है।

बहोत शानदार खुबसुरत नजारा मुझे देखने को मिल रहा है।

यहां पे मुझे एक बहोत अच्छा किसी शानदार किसी कॉलेज स्कूल का फोटो दिखाई दे रहा है जहां पे स्कूल के सामने बहोत सारी मोटरसाइकल और बाइक भी खड़ी हुई है।

और दिखाई दे रहा है जहा पे दो तीन चार छे सात बड़ी बहोत बड़ी बिल-बिल मंजिल की बिल्डिंग बनाई दिखाई दे रही है और यह बहोत बढ़िया बिल्डिंग है यहाँ पे दिखाई दे रही है।

फोटो में मैं देख पा रहा हु के एक मुझे यहाँ पे खेत का फोटो दिखाई दे रहा है जहां पे चौथे का हरिआली है।

एक मुझे बहोत अच्छा करिया इसके होटल के नाम पे दिखाई दे रहा जहा पे घर में कोई दूकान बना रखी है।

और एक जहाँ पे बहोत बड़ा पेड़ दिखइ दे रहा यहाँ पे--

और लेडिज शॉप है लेडिज कपड़ो में लगाये यहाँ पे--